पैंट शर्ट के कपड़े काफी कलरफुल दिखाई दे रहे हैं शूट के कपड़े भी अच्छे दिख रहे हैं किनारे भी बहुत कुछ--

और पहाड़ी पर कुछ घास पेड़ पौधे भी उगे दिखाई हुए दिखाई दे रहे--

और एक गाड़ी में एक औरत बैठी हुई और एक आदमी के साथ जा रही है सामने बोहत सारे बिजली के खम्भे और तार दिखाई दे रहे हैं।

सुन्दर और लूभावना लग--

सामने हमें एक क नदी दिखाई दे रही छोटा सा तालाब उसपे बोहत सारी घास उगी हुई दिखाई दे री सामने एक बोहत खूबसूरत सी--

दिखाई दे रहीं है बोहत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे--

खड़े दिखाई दे रहे है खेत की तरह किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं सूरज की रोशनी दिख रही और बहुत सारे--

पैर छू रहे है कुछ लोग हाथ जोड़ रहे क बैठ कर के प्राथना कर रहे और ऊपर एक--

बोहत सारी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है साइड में एक बुक शेल्फ दिखाई दे रहे है जिसमे बोहत सारी बुक्स और फाइले रखी हुई दिखाई दे रही है ए_सी है टेबल है।

सामने इया में एक चिड़िया घर की तरह दूर से दिखाई दे रहा जिसमे बोहत सारे दरियाई घोड़े दिखाई दे रहे दो बैठा हुए है एक खड़ा हुआ है जो--

डिज़ाइनर कुर्सियां दिखाई दे रही है सागोन की बनी हुई दिख रही पीछे कुछ सोफे भी दिखाई दे रहे और भी बहुत सारा सामान--

जो देखने में बोहत आकर्षित लग रहे है दीवार के ऊपर बोहत सारे फूल दिखाई दे रहे है और दीवार--